दो तीन लोगो के कैटलॉग लगे हुए है।

जहाँ पर एक झंडा लगाया हुआ है।

एक बोट किनारे पर है और एक बोट समुद्र के बीचों-बिच --

लड़का खड़ा हुआ है लड़का सेल्फी लेने के स्टाइल में --

इस तस्वीर में एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर --

यह एक शॉप है शॉप फल का है ।

यह एक हलवाई की दुकान है।